ये देखिए यह जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर बहोत सारे फ्रूट्स रखे हुए हमें दिख रहे हैं यहां से आप सामान खरीद सकते हैं और कितने अच्छे से सब कुछ हमें नजर आता हुआ--

देख सकते है आप लोग इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है के बोहोत से लग यहाँ पर कोई सा फंशन या प्रोगराम को अटेंड करने पोहचे है।

कोई वॉक कर रहा है कोई बैठा हुआ है कोई चल रहा है और आप यहां पे देख सकते हैं।

इस चित्र के अंदर हमें एक रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है जहां से एक ट्रेन जहां पर रुकी हुई है।

देख सकते है आप लोग इस चित्र के अंदर जो है एक प्लम्बर कोई कनेक्शन कर रहा है कोई लाइन को कट रहा है।

बातें कर रहे पीछे बहोत अ सुंदर सी सुंदर पेंटिंगे हमें नजर आ रही हैं और यहां पे बहोत अच्छा डेकोरेशन भी करा--

इस चित्र के अन्दर एक आपको बेड रूम दिखाई दे रहा है जहा पर बोहोत ही क्लीन सी वाइट सी बेड शीट बिछी हुई है।

इस चित्र की अंदर एक माजिद नजर आ रही है झा पर लोग नमाज पड़ने जाते है और येह जो चटाई की तरफ मेट लगाई हुई दिख रही है ये जा नमाज है।

यहां पर जो है कुछ आसपास में कुछ सजावट के कार्य भी चल रहे हैं इसके पास के अंदर।

इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कोई सी एक बिल्डिंग है जो की अभी पूरी बनी नही है और इसके अंदर काम चल रहा है और यह बोहोत सारे बास लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र के अंदर एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जो की एच_पी पेट्रोल पंप है।

इस चित्र के अंदर जो है वो एक होटल जैसा लग रहा है और यहां पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है खाने के लिए आप लोगों के लिए।

जो किताबो को पढ़ रहे है और क्या कहते है ना ये एक लाइब्रेरी टाइप का नज़र आरहा है और यहाँ पर मेडिकल लिखा हुआ है।

इस चित्र के अंदर एक प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है जहाँ पर फिसल पट्टीयां लगी हुई है।

और ये एक स्टेप करते हुए नज़र आ रहे है एक प्रकार के सभी लोग यहाँ यूनीफॉर्मिलिटी के साथ स्टेप करते हुए नज़र आरहे है।

इस चित्र के अंदर हमें एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है।

इस चित्र के अन्दर हमें जो है वो दिखाई दे रहा है।

इस चित्र के अन्दर हमें नज़र आ रहा है कि एक शादी है।

और शादी में बहुत सारे गेस्ट जो है उस शादी को अटेंड करने पहुंचे है। स्टेज भी नज़र आ रहा है और डिस्को लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र के अंदर हमें एक घर दिखाई दे रहा है जहां पर एक झंडा भी लगा हुआ है।

और अपने स्वस्थ्य रहने के लिए वो जो लेग एक्सरसाइज को करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र के अंदर हमे एक मैदान सा दिखाई दे रहा है और एक गेट नजर आ रहा है उसके आस पास दो सुन्दर से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।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

ये एक चित्र है जहा पर एक हमे बिल्डिंग नज़र आ रही है जो की बर्क के लीये हुंडई प्रॉमिस की बिल्डिंग है।

ये होंडाई का शोरूम है जहां पे कार्स मिल रही हैं।

इस चीत्र के अंदर हमने एक गार्डन सा नजर आ रहा है थोडा सा रोड है थोड़ी सी जगह के अंदर जो है कुच्छ पेड़ लगे हुए है।

इस चित्र के अंदर एक भारत पेट्रोल पंप नज़र आरहा है यहाँ से एक कार भी जा रही है यहा पे पेट्रोल डल वाने।

और यहां पर देखिए आप पेट्रोल पंप के अंदर ग्रीनरी भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र के अन्दर हमें बोहोत सारी चिडयाये लव बर्ड नज़र आ रही है किसी का रंग नीला किसी का रंग हरा --

किसी का नल पिला कोई सफेद बोहोत ही खूबसूरती से ये बैठी है।

इस चित्र के अंदर हमे जो है वो बहोत ही खूबसूरती से बने स्टेप्स नजर आ रहे है इसके उपर बहोत ही अच्छी चित्र कला दिखाई दे रही है जहा पर आपको दिख रहा होगा मोर बने है।

इस चित्र के अन्दर हमे दिखाई देरा है की ये एक हॉस्पिटल का बोर्ड है।

ये एक पार्क है और ये यहां पर लोग अपनी ताजी हवा खाने आते हैं।

इस चित्र के अंदर एक आपको बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग है।

इस चित्र के अन्दर एक लड़का दिख रहा है जो की फाउंटेन बना हुआ है उसके सामने बेठा हुआ है और शायद अपनी तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र के अन्दर एक जो है वो लोयर्स है वो जाते हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र के अंदर चंडीगढ़ का लॉज दिखाई दे रहा है एक गेट है जो कि खुला हुआ है।

इसचित्र के अंदर आपको नजर आ रहा है एक बिल्डिंग है उसके सामने एक रोड है एक गाड़ी खड़ी हुई है।